हैंकी टांगा हुआ है हर एक तरह के आईटम है।

ये एक कैफे हैं कैफे में जो कैफे हैं उसके बाहर काफी अच्छे कलर्स ब्लू और व्हाइट कलर्स के बलुन्स लगे हुए डेकोरेट किये हुए।

और रास्ता जो है वो अभी सिंपल है उसमें कोई--

यहां पे तीन जेंट्स आप देख सकते हैं और वो काम मजदूरी कर रहे हैं साथ में वो लोग सीमेंट बना रहे हैं।

ये एक चर्च का दृश्य है जहां पे अ पीछे कुछ--

और उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है दो आद--

पढ़े लिखे सभी बच्चे डॉल के सहारे या--